यहाँ पर एक बस है फील्ड में जो लगा हुआ है और एक बूढ़ी माता चढ़ने जा रही हैं उस बस पे।

इसके अंदर पढ़ाईयाँ अच्छी-अच्छी होती होगी। बहुत ई ऊँचा इक्वेश ईक़्वेशन दिया जाता होगा। यहाँ के लोग --

आह इस को सपना में भी नहीं सोचे थे कि इतना सुन्दर कभी घर में देखेंगे देख रहा हूँ की खूब सुन्दर इसके अंदर टाइल्स मार्बल लगा हुआ सुतने का --

यहाँ पे डेयरी एवं अलग-अलग प्रकार की सुविधाएं हैं दूध की व्यवस्थाएं बच्चों की हॉर्लिक्स की व्यवस्थाएं --